एक लड़के ने क्रीम कलर की शर्ट पहनी है और उसने जींस पहनी है।

एक गाड़ी की प्लेट पर न्यू पोलो लिखा हुआ है कार की हेडलाइटस दिख रही है सामने एक कमरा है।

इसमें टेबल और कुर्सी लगे हुएं हैं।

सामने एक बैंक है जिसका नाम एस_बी_आई है।

लाइट ग्रीन और सफेद रंग की है।

उसके पास ही एक कुर्सी है।

उसके ऊपर सोलर सिस्टम बना हुआ है।

इसका फर्श ब्लैक एंड व्हाइट है।

इसके अंदर एक दीवार है दीवार पर लाइट्स लगी हुई हैं।

सामने एक वाइट कलर की लकड़ी की--

इसमें बच्चे कोचिंग ले रहे हैं।

नीचे कुछ और दुकाने भी हैं।

सामने इशूस की पिक्चर लगी है।

इसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

टेबल के ऊपर कांच का कवर है।

यह एक संस्था की पिक्चर हैं।

इसपे एक दीवार ऑरेंज कलर की है।

इसके अंदर दो ग्रीन कलर की जालीदार खिड़कियां हैं।

दो तीन बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर नंबर एच_पी बारह टी एक हजार उन्हतीस लिख है।